हेलो गाइस देख सकते है ये जिम सेंटर है और काफी बड़ा जिम सेंटर और इस पे बहुत सारा लाइट वगेरा लगाया हुआ है।

गिलास वगेरा बर्तन बहुत सारा और ये चाची लेने के लिए आया हुआ हैं और ये बच्ची टिफिन ले रहा हैं ताकि यहाँ पे डेयरी वगेरा सब कुछ मौजूद हैं और काफी बड़ा--

एक ट्रेन का कोई इंजन बस का एक ऑटो का सब कोई फोर व्हीलर टू व्हीलर और भी काफी सारा बड़ा नदी हैं और यहाँ पे बहुत सारा ब्रीज बन रहा हैं देख सकते हैं।